यहां में बहुत सारे लोग काम कर रहे।

रोड में बहोत सारा गाड़ी सब दिख रहा है।

राइट साइड का जो बॉर्डर है उसको बहुत अच्छे से बनाया है।

आगे में हमलोग को बहुत सारा--

टेकीया में चेयर में एक आदमी बैठा है वो शायद ये बच्चे लोगों को कुछ बांट रहा है।

ये लोग घास को काट रहा है जो कि अच्छा बात है।

आगे में फोटो में बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है।

ये फोटो किसी रिलिजियस प्लेस का लगा रहा है।

पेड़ है पेड़ बहुत सुंदर लग रहा हैं।

ये फोटो जहां से खींचा है वहां में एक चेयर दिख रहा है और वो भी एक घड़ी लग रहा।

इसमें लिखा है कि एक रेजिडेंस का लड़का एअर वन लाया है।

नदी का पानी बहुत साफ है।

इस फोटो में बहोत सारा शर्ट टी शर्ट रखा हुआ है।

इस दुकान में बहोत सारा चीज़ मिलता है।

सामने मेरे को एक गेट भी दिख रहा है।

ब्रिज भी दिख रहा जो समुद्र जो को एक साइड से दूसरा में जोड़ रहा है।

इस फोटो में बहोत बिल्डिंग सब दिख रहा --

दूर में एक ऑटो भी दिख रहा है जिसमें से एक आदमी उतर रहा है।

नीचे में घास वास पूरा है दूर में पेड़ सब भी दिख रहा है।

उस साइड में एक पोल है जो बिजली का वायर है उसका ऊपर।

पीछे में दो घर है एक ग्रीन कलर का एक येलो कलर का।

बीच वाला बिल्डिंग का टॉप फ्लोर में कपड़ा टंगा हुआ है।

ये किसी टाउन का फोटो है इस फोटो में हमको बहुत सारी दुकान देख रहे हैं।

यह फोटो कोई कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री का लग रहा है।

दूर में घर भी दिख रहा है घर बहुत सुंदर लग रहा है।

का ईटिंग के लिए भी समान है।

ये फोटो कोई स्टोर का है।

बहोत अलग अलग कलर का पर्स सब भी है।

इसका डिजाइन बहुत अच्छा है।

यहां से सामान खरीद सकते हैं।

यहां में एक स्कॉर्पियो भी दिख रहा है।

उस बक्शा में कुछ रखा भी होगा उसका ऊपर तोषक रखा हुआ है।

ये किसी ज्वैलरी स्टोर का फोटो लग रहा है।

सामने में दुकानदार है और कुछ कस्टमर भी है।

यहां में चार लोग खड़ा हुआ है।

फर्स्ट फ्लोर में स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया लिखा है।

ये फोटो कोई पूजा का लग रहा है।

इस स्टोर का नाम एस_एन_एम स्टोर है।